इस होटल का नाम रंड्यू है।

वहां पर मैक्स का एक शोरूम है यहां पे फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट का इमेज लगा हुआ है।

ए_टी_एम के बाहर तीन लाइट जलता हुआ दिखाई दे रहा है।

सुजुकी का दरवाजा खुला हुआ दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहोत सारे लाइट भी नजर आ रहे हैं जो जलता हुआ दिखाई दे रहा है।

अगल बगल में बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यह एक मॉल है इस मॉल में--

बगल में बहुत सारा झूला भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

वॉल पर घोड़े का इमेज भी दिखाई दे रहा है इस किनारे में एक तार दिखाई दे रहा है।

यह माल गाड़ी है इसमें कोयले को ढोया जाता है।

एक प्लांट का दृश्य है यह बहुत बड़ी फैक्ट्री दिखाई दे रही है।

दोनों मशीन एक दूसरे से जॉइंट किया गया है।

यहां पर बहुत सारी लाइटिंग लगे हुए हैं।

यह एक गौशाला है जिसमें एक भैंस और उसकी बच्ची नजर आ रहे हैं।

यहां की दीवार सीमेंटेड से की गई है।

यहां पर पूरा प्रकाश आ रहा है गाय दोनों बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह संजीवियर कॉलेज का छवि है।

यहां पर लोग आता व जाता दिखाई दे रहा है।

प्रतिमा के सामने तीन हवन कर किया हुआ दिखाई दे रहा है वहां पर कुछ थालिया भी रखी है जिस पर कपूर वगैरा रखे हुए हैं।

सैलून के बाहर चेयर लगे हैं।

यह एक स्कूल का छवि है इस स्कूल में साइंस एग्जिबिशन हो रहे हैं।

यहां टेबल चेयर बहोत सारा दिखाई दे रहा है।

टेबल के ऊपर में वाटर बोतल और कुछ बॉक्स रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां गेंदा का फूल खिला हुआ दिखाई दे रहा है।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

इसकी बगल वाले छत में टाटा स्काई लगाया गया है।

काउंटर बने हुए हैं काउंटर के पीछे वाले दिवाल पर वो रूम हीटर भी लगा हुआ है और बहुत सारा इमेज लगा हुआ है।

सभी लोग अपने मैट पर योगा करते नजर आ--

आगे में नो एंट्री का गेट भी लगाया गया है वहां पर बहोत सारे गमले भी लगाए गए हैं।

इस सलून में एक व्यक्ति अपने बाल कटिंग करवा के बैठा हुआ है।